बहुत सारे छोटे-छोटे फ्लावर खिली है।

देख के ये पता चल रहा है कि ये --

और यहाँ पे भारत की पताका दिख रही है।

दिख रही है टेबल के ऊपर एक --

सुना-सुना है रास्ता बहोत --

यहा पे एक झरना दिख रही है।

देखके लग रहा है ये एक पार्किंग लोट है।

है ऊपर फॉल सीलिंग में ग्रीन कलर है। बहुत सारा लाइट दिख रहा है।

ये एक लॉन्ड्री है।

ये एक ज़ू है। ज़ू के अंदर एक राइनसौरस दिख रही है।

सर पे एक रूमाल सा बंधा हुआ हैं।